गेट पर दीन दयाल लिखा हुआ है व कॉलेज का गेट खुला हुआ है लोहे का गेट बना हुआ है।

रखे हुए व सेब तरबूज रखे हुए दिखाए गए हैं यहाँ --

वे नीचे नीले रंग का बोर्ड उसपे सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया लिखा हुआ है।

कमरों की खिड़कियाँ आधी खुली हुई दिखाई गई हैं व यहाँ खम्बे की तार --

यहाँ एक पुस्तकालय का दृश्य दिखाया गया है जहाँ बहुत सारी अलग-अलग विषयो की पुस्तकें रखी हुई होती हैं ।